एक हॉस्पिटल का रूम है जिसमें तीन बेड लगा हुआ है परड़ा लगा हुआ है।

और फिर पंखा लगा हुआ है एक टेबल है फिर टब है और फिर --

यह एक दुकान है जिसमें लेडीज का कपड़ा लेडीज का ब्यूटी का जितना सामान होता है वो--

और यहां दुकान में लाइट जल रहा है ऊपर नीचे पूरा फर्स लगा हुआ है पीछे दीवार पीला है।

यह एक पार्क दिख रहा है जिसमें चारों तरफ बाउंड्री है।

यह एक बिल्डिंग है जिसमें एक एनिमल जिम है।

हाथ धोने के लिए वेसिन लगाया गया है।

और यह एक रेस्टोरेंट है यहां पे बहुत सारे व्यक्ति इधर-उधर जा रहे हैं।

यह एक फ्लैट है जिसके नीचे कॉफी शॉप है ऊपर आदमी लोग रहते हैं बगल में --

और बगल में बाइक लगा हुआ है और बाइक के बगल में बहुत सारा घर है और एक आदमी बाइक लेकर अंदर जा रहा है।

इसके साइड में भी एक पेंटिंग है और उसके ऊपर लाइट है बगल में तार है।

और इसके अंदर दो लड़की जिम कर रही है और--

यहाँ पे तोता को कैद कर के रखा गया है पिंजड़ा के अंदर और सभी लोग आ रहे हैं और इसको देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति अभी ठरा है।

और यहां पे और छोटे बच्चों का झूला रखा हुआ है।

इसके आगे स्टेज है और यहां पर बहुत अच्छे-अच्छे फूल से सजाया गया है।

और उसके ऊपर ए_सी भी लगा हुआ है और यहां पे --

हरा भरा प्लास्टिक का घास लगाया गया है इसके बगल में शीशा का पूरा खिरखी है।

और यहां पे रंग बिरंगे के चेयर टेबल लगाया गया है।

इसके साइड में एक बिजली का तार है।

इसके बाहर में एक पोस्टर लगा हुआ है।

इसके ऊपर में सबका बालकनी दिख रहा है।

और इसके बाहर में बड़ा-बड़ा पेड़ पौधा है।

इसके बीच में एक छोटे-छोटे बांस का पेर रोपा गया है.

और इसके बीच में किसान लोगों को दर्शाया गया--

इसमें बैठने का जगह भी दिया हुआ है।

इसके ऊपर तार दिख रहा है।

इसके साइड में एक पानी का बोतल दिख रहा है।

इसके ऊपर में लाइट का होल्डर लगा हुआ है।

जिसमें रंग बिरंग के पाइप लगा के इसमें डिजाइन दिखाया जाता है।

इसके बाहर जूता चप्पल खोलने के लिए रैक बनाया गया है।

इसके चारों तरफ फर्स पे मैट बिछाया गया है।

यह एक घर का गार्डन दिख रहा है।

इसके चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगाए गए हैं।

और यहां पे सभी लोग मार्क्स लगाए हुए हैं।

जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के लाइट चल रहे हैं।

जिसका नाम श्री महाशय जी निवास है।

इसके नीचे एक साइकिल मार्ट है।

और नीचे आंध्रा बैंक का भी ए_टी_एम है।

और यहां पे सीसा में ये सब रखा हुआ है।

और सीसा के अंदर थीनर डीजल ये सब रखा गया है।

इसमें बहुत सारे फर्नीचर रखे हुए हैं।

टेबल चेयर बेड --

का किया ऐसा बहुत सारा चीज यहां पे रखा गया है।

यहां पे कोई चीज का क्वार्टर लग रहा है।

इसके बाहर बहुत सारा पेड़ पौधा फूल लगाया गया है।

और इसमें बहुत सारा खिरखी दिख रहा है।

इसके बगल में एक बड़ा सा पेड़ है।

और यहां पे साइड में बिजली का तार है।

जिसके चारों तरफ बैलून लगाया गया है।

यह राधा रानी फिक्स प्राइस शॉप है।

लड़कियों का या औरतों का कपड़ा दिया जाता है।

इसके पीछे की तरफ लकड़ी दिख रहा है।

इसके नीचे एक चेयर लगाया गया है।

और इसके पीछे में बड़ा-बड़ा पैर दिख रहा है।

इसके नीचे पूरा डॉल से भरा हुआ है।

इसके ऊपर बैंक का शीशा लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे कार लगे हुए हैं।

इसके बगल में एक केक का दुकान है।

जिसमें लेडीज का और बच्चों का कपड़ा मिलता है।

और इसके चारों तरफ कपड़ा टांगा हुआ है।

जिसके नीचे से एक अंदरग्राउंड बनाया गया है।

और कस्टमर लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।

और ऊपर बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

और यहां पे एक ए_सी लगा हुआ है।

और यहां पे सब अच्छे से काम कर रहे हैं।